आपको अ कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही होगी। वह मूर्तियां जो हैं वो --

आप देख रहे होंगे तो बहुत सुंदर तरीके से अ उसका जो है --

अलग-अलग तरीके के बुक जो है उसके कैटेगरी के हिसाब से हर रैक के ऊपर लगाए हुए हैं।

और सामने उसके अ जो सेल्फ है सेल के ऊपर बोहोत सारी अ अलग-अलग केटेगरी की बुक्स हैं।

पैलेस जो है वो येलो कलर का पैलेस है। उसके आजू-बाजू बहुत उच्चे उच्चे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे --

आप देखोगे तो जो सोसाइटी का फोटो लिया हुआ है वो शाम के समय फोटो लिया हुआ है।

सोसाइटी है उसके लाइट्स भी ऑन हो चुकी है आप देखोगे --

यह एक कीर्ति बुक पैलेस के फो मैन एंट्रेंस का फोटो है। आप देखोगे --

यह फोटो जो है एक ऐंगल की देखिए बग़ीचे का फोटो दिखाई दे रहा है सामने जो है वो --

और उसके आजू बाजू जो है बहुत सारी घास जो है ग्रास जो है वो उगी हुई है।

अब कपड़े पहने हुए हैं कुछ बच्चियां जो है दिखाई दे रही है।

और छत के ऊपर अ पीले लाल गुलाबी ऐसे डिफ्रन्ट डिफ्रन्ट कलर के फूलों के गमले हैं।

बैकग्राउंड का कलर भी जो है वह पिंक कलर है। साइड में जो पिलर है उसको गोल्डन टच दिया हुआ है।

और बोर्ड के ऊपर मारुति का लोगो है और वहाँ पर लिखा है कंप्यूटराइजीड व्हील बैलेंस इन एलाइनमेंट ।

यह जो फोटो है कुछ फ्रेंडस लोगों ने फंक्शन में निकला हुआ फोटो दिखाई दे रहा है जो कि सेल्फी फोटो है।

और गुलाब के फूल के झाड़ ऐसे फूल के झाड़ जो है वो दिख रहे है।

अ वहाँ पे अ टेबल के आजू-बाजू जो है वो अ रेड कलर्स की चेयर्स जो है वो लगाई हुई हैं।

और शॉप के अंदर जो है कुरकुरे चिप्स और उसके जो पेकेट्स लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

वहाँ पे कुछ आदमी और औरत जो है नमस्कार किए और ताली बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अ सबसे लास्ट में एक मतलब सबसे फ्रंट में आपको अ एक पुजारी जो है अपने हाथ में माइक लिए --

इस फोटो में आपको अ मोगा पंजाबी तड़का इस होटल का फ्रंट इन्टरंस दिख रहा है।

पाजू में अ मोगा होटेल एण्ड फार्मस का भी बोर्ड दिखाई दे रहा है अं आप देखोगे तो सामने जो है --